अ नाम भी है इसका बहुत ही सुंदर सा पिक भी आया है इसका और बहुत ही सुंदर लग भी रहा है ये और बहुत ही प्यारा सा ये एक लाइन से खड़ी हुई है।

बहुत ही सुन्दर सा ये दिख रहा है ये पिक्चर भी बहुत अच्छी ली हुई है बहुत अच्छी क्वालिटी है पिक्चर की काफी अच्छा व्यू है ये आया हुआ और बहुत सुन्दर लग रहा है ये देखने में बना हुआ भी बहुत अच्छा है।